यहाँ एक गैलरी है। गैलरी काफी लंबा है। यहाँ ऊपर में एक फैन लगा हुआ है।

सफेद कलर का पेंट पहन रखा है। बीच में एक दुपट्टा भी बाँध रखा है।

गेट के पीछे कुछ सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं। सीढ़ियों का रंग सफेद कलर का है।

साइड में एक दीवार का रंग काला है।

लाइट भी लगी है।

यह एक गैलरी है गैलरी काफी अच्छा से डेकोरेट हुआ है ऊपर में फूल सजे हुए हैं।

लाइटें भी लगी हुई हैं। दीवार पर गुलाबी कलर का --

यह एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट पीले कलर से रंगा हुआ है। इसका बॉर्डर भूरे रंग से रंगा गया।

इसकी खिड़की से जो प्रकाश निकल रहा है वो सुनहरे कलर का निकल रहा है।

सामने में एक येलो कलर का और सफेद कलर का कैलेंडर भी टाँगा गया है। कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

और खेल को देख रहे हैं। आस-पास में बहोत सारे पेड़ हैं जो काफी बड़े-बड़े हैं और काफी हरे-भरे भी हैं।

सामने में शीशा लगा हुआ है। शीशा केसरिया रंग का है। यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी का दाढ़ी बना रहा है।

बैलून भी लगा है। लाइटें भी लगी हैं। पंखे भी लगे हुए हैं।

एक बाउंड्री बना हुआ है। बाउंड्री पीले रंग से रंगा गया है।

सबसे नीचे वाले ताले पे दो दुकान हैं।

जिस पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।